इस तस्वीर में बड़े बड़े पोल लगे हुए दिख रहे हैं।

इस छवि में एक चर्च दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बाउंड्री घेरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक बसस्टॉप दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक रास्ता नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर एक रेस्टोरेंट की है।

इस तस्वीर में गेट भी नजर आ रहा है।

इस चित्र में कुछ बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में काउंटर दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिए गए चित्र में बहोत सारे केक और बिस्कुट रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है औ--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

इस चित्र हमें एक ट्रक दिखाई दे रहा है।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

इस पिक्चर में अलमारी भी दिखाई दे रहे हैं पीछे--

इस पिक्चर में एक नदी दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिए गए छवि में कुछ पेर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में कुछ कार्टून नजर आ रहे हैं।

ऊपर दिए गए चित्र में बहुत सारे ईंटें दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर एक जीम की है।

ऊपर दिए गए चित्र में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है फिटनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन इट्स ए वे ऑफ लाइफ ।

इस पिक्चर में बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में खुला आसमान दिखाई दे रहा है।